और एक आदमी और एक आदमी को कटिंग करते हुए देख सकते है रहे है इस पिक्चर मे खड़े हुए कटिंग कर रहे है।

तो हम इस पिक्चर मे बहुत सारे लोग को देख सकते है गोवा घूमने आये हुए है।

और बहुत सारे पत्थर देख सकते हैं और झाड़ भी देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ भी हैं यहाँ पे बहुत खुला आसमान हैं सबनम--

ते हैं और वहाँ पे बंदे हैं और झाड़े हैं और बहुत सारे घास उगी हुए नज़र आ रही हैं हमको वहाँ पे--

वाइट कलर की चेयर है और बोहोत सारा पीछे डेकोरेशन किया गया है पिंक कलर येलो कलर रेड कलर और वाइट कलर ब्लू कलर उ--

स्टैचू नज़र आते हुए देख सकते है वह बहुत रखम-रखम के स्टैचू दिख रहे हैं हमको वहाँ पे--

झाड़ भी बहोत सारे झाड़ भी दिख रहै है और खुला सा आसमान भी नज़र आ रहा है हमको साफ़-साफ़--

बच्चो की ट्रैन नज़र आती हुए एक्सहिबिशन में एक बच्चो की ट्रैन --

वह बैलून रेड ब्लू वाइट कलर के हैं और यह लड़का ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ नज़र आता हुआ देख सकते हैं हम और येलो कलर की ओढ़नी--

यह टू बेकर रोड हैं और बहुत खुला सा आसमान भी देख सकते हैं।